जिसके ऊपर दो मटके रखे हैं उसके ऊपर ग्लास भी रखा हुआ है।

इस इमेज में दिखेगा यहां पे सामने एक बैंक नजर आ रहा है जिसपे लिखा है एच_डी_एफ_सी बैंक ।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक रोड दिखाई दे रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक सुंदर सा गेट दिखाई दे रहा है जो फूलों से सजा हुआ है यहां पर देखिएगा --

और आसपास देखिएगा बड़ी बड़ी इमारत भी--

साइड में खाने पीने का काउंटर बना हुआ है।

और देखिएगा कोकोकोला भी फ्रिज के ऊपर लिखा हुआ--

इस ईमेज में देखिएगा एक हॉल दिखाई दे रहा है।

आझाद जी का गांधी जी का और भारत माता का बहुत सारा चित्र बनाया गया है।

जिसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड है उसेपे लिखा हुआ स्टेट बैंक ए_टी_एम नीचे देखियेगा एक आदमी खड़ा हुआ है और वो दरवाजा बंद करता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सड़क के किनारे बड़ासा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और यहां पर कुछ कार और साइकिल मोटरसाइकिल --

सामने बड़ा सा शिशा है यहां पर एक लड़की बाल को पिनअप करके बैठी हुई दिखाई दे रही है।